दुकाने नजर आ रही हैं। यह दुकान --

के सामने कुछ वाहन खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

उनके हाउस वाइज टी-शर्ट देखती हुई नजर आ रही है। यह मेज के ऊपर रखी गई टी-शर्ट है।

यह एक ब्रांच है। जहां पर एक एटीएम भी मशीन लगाई गई है।

यह एक दृश्य है। इस दृश्य में --

पार्क हरा-भरा है। पार्क की चार दीवारी कर दी गई है।

मूर्ति है जो पूजा पाठ करने के लिए लोग आए हुए हैं।

यह बोहोत बड़ा स्टेडियम है। इसके अंदर --

यहां पर टाइल लगा रही है। टाइल रात को चमकती हुए दिखाई दे रही ऐं ।

सैलून का है। जहां पर एक नई बाल काटता है। यहां पर अभी दो कुर्सियां डली हुई हैं।

एक फैमिली है जो कि फोटो क्लिक कराती हुई नजर आ रही है।

तो रोड के ऊपर है।

यह एक दृश्य है। इस दृश्य में हमारे सामने एक दूध --

इस शहर का सीन है। जहां पर एक चौराहे के बीच में पार्क बना रखा है।

ऑटो है जो एक व्यक्ति अपनी माता के हाथ में चाबी --